यह एक स्टीमर जैसा है।

कुछ ग्रीन कलर के पैरेट है। कुछ व्हाइट कलर के पैरेट है और बोहत ही सुन्दर लग रहे हैं।

और बड़ा सा भवन कोई दिखाई दे रहा बड़ा सा हॉल --